यहाँ यहां पे मौसम बहोत अच्छा है। यहां का वातावरण भी बहोत अच्छा है। यहां पे हरियाली बहोत --

ये शटर लाल रंग के हैं जो लोहे के बने हुए हैं इसके आगे खंभा लगा हुआ है जिसपे एक बोहुत बड़ा तार है जो काले रंग का है इसके आगे दो स्कूटी खड़ी हैं जो रंग बिरंगी हैं।

केक है जो सफेद और हरे रंग का है। इस केक पर दो अ म मोमबतीयां लगी हुई हैं और एक टेडी रखा हुआ है।

यह ऊन रखी हुई है जो सफेद रंग की है। यहाँ ऊन कुछ टुकड़ों मे बटी हुई है।

जे एक गेस्ट हाउस है। जो बहोत ही अच्छा है। ये फूल और गुब्बारा से सजा हुआ है इसके अंदर ढेर सारी लाइट लगी हुई हैं।

यह एक बहोत बड़ा गा-गार्डन है जिसके अंदर बहोत अच्छी अच्छी हरियाली --

जिसमें काले रंग के तार लगे हुए हैं। इसके बीचो-बिच में एक घोड़ा लेटा हुआ है दो तीन घोड़े चर रहे हैं। यहाँ पेड़ पोधे बहुत है।

बोहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं। यहां के परदे नीले रंग और नारंगी रंग के हैं।

यहाँ एक ऑफिस है जो बहुत ही अच्छा है इसके अंदर लाइटे जल रही हैं और उसकी दीवाले पीले रंग की है यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है।

यहाँ पे कुछ बाइक खड़ी हुई हैं जो काले रंग की दिख रही हैं। यहाँ पे एक पोछा पड़ा है जो हरे रंग का है इसके दरवाजे और खिड़कियाँ काँच की बनी हुई हैं और इसके ही ऊपर एक फूलों की माला लगी हुई हैं।

महिंद्रा की दुकान है जो बोहोत ही बड़ी है। यहाँ पर बोहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं इसका शटर गुलाबी रंग का है। यहाँ पर खड़ा हुआ है जो सफ़ेद रंग का है। यहाँ एक पेड़ है जो भूरे रंग का है और कुछ गाड़िया भी खड़ी है।

इसके अंदर बोहोत सारी बाइक नजर आ रही हैं और बोहोत सारे बल्फ लगे हुए हैं। इसके बाहर बोहोत सारे पोस्टर दिख रहे हैं। यहाँ इसके पास की दुकान बंद है यहाँ पे पेड़ भी हैं --

कार खड़ी है जो सफ़ेद रंग की है यहाँ पे बोहत सारे तार हैं जो काले रंग के हैं। ए यहाँ इसके बाहर दो आदमी आपस मे बात कर रहे हैं।

इसके इसका किनारा ईंटों से बना हुआ है | इसके थोड़ी दूर पे एक मंदिर है | वहाँ पे एक घर बना हुआ है।

तीन ऑटो नज़र आ रहे हैं जो सफे़द और पीले रंग के हैं इसके पीछे की दीवाल कुछ नारंगी रंग की नज़र आ रही है।

एक हॉस्पिटल है जो बहुत ही बड़ा है और काफी खूबसूरत भी है। यह से बना हुआ है।